रखे हुए हैं एक आदमी बैठ के फोन चला रहा है बगल में एक फ्रिज है रखा हुआ है।

एक आदमी मोबाइल चला रहा है।

कि बड़ा बड़ा सा जंगल है उस--

अगल बगल बड़े बड़े पौधे हैं और नीचे घास भी लगे हैं उस घास को बारहसिंगे सब खा रहे है।

यहां पे मैं देख पा रही हूं एक बहोत ही बड़ा--

मैं देख पा रही हूं एक मेज पर--

तीन रेलगाड़ी की पलटी हुई है।

कुछ लोग सवार होकर नाव चला रहे हैं।

दिखाई दे रहा है उसके पीछे कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

मैं देख पा रही हूं यहां एक फूल सेंटर है जो मजहर--